उसपर एक फोटो है जो ब्लर हो रखा है।

आसपास बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में एक प्लांट की फोटो दिख रही है जोकि बहुत बड़ा प्लांट है।

इस पिक्चर में एक दुकान की फोटो दिख रही है जिसमें बहोत सारे औजार पड़े हुए हैं और एक लोहे की जाली भी पड़ी हुई है।

पिक्चर में एक थिएटर की फोटो दिख रही है जिसमें ऊपर छत में कुछ पंखे हैं और लाइट्स लगी हुई है।

एक आदमी साइकिल लिए खड़ा है और इसके आसपास कुछ पेड़ भी है और दूब घास भी बिछा हुआ है।

पिक्चर में एक फंक्शन की फोटो दिख रही है।

लाइब्रेरी में बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं और बॉक्स पर नंबर लगे हुए हैं।

पिक्चर में एक रूम की फोटो दिख रही है जिसमें कुछ लेडिस एक्सरसाइज कर रही है।

ब्लू रंग के कपड़े पहन रखे हैं उसके बराबर में एक पेड़ है।